एक मोटर साइकिल भी है।

गैरेज में मोटर साइकिल ठीक किया जाता है।

यहाँ तेल सरसों तेल --

यह एक रेसिंग बाइक है जो --

आगमन किया जाता है और यहाँ आके --

हाई बड़ी दिखाई दे रही है।

कोई जाने का प्लान नहीं --

जहाँ पर ना कोई आया है ना कोई गया है।

और यहाँ पे कूड़ा कचरा भी नहीं है।

सब्जी का दुकान भी है जहां पर फल भी बेचा जा रहा है।

जहाँ पे व्यक्तियों का समान दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ जो वाटरपार्क में जो स्विमिंग पूल है।

यह एक पानी पानी की फव्वारा है।

मोमोस रखा गया यहाँ पे जो लाइट कलेक्शन लिया गया।

यहाँ पर एक हॉल है हॉल में पन्दरा से बीस बेड हैं।